इस में एक कार पार्किंग दिखी गयी है लिखा गया है और यहाँ शायद कार पार्किंग होती हैं।

इस तस्वीर में कार एजेंसी की बाइक एजेंसी दिखाई गई है जो की बहुत दूर से और बाहर से ली गई तस्वीर है।